हेलो गाइस तो आप देख रहे हैं कि यहां पर बटर वाटर ही वाटर पानी ही पानी है और इसमें एक जहाज खड़ी हुई है।

हेलो गाइस तो आपको दिख रहा होगा कि यहां पर बहुत सारे पेड़ है।

इंसान भी यहां दिख रहे हैं बहुत ही अद्भुत कलर की दिख रहे हैं यहां आसमान भी दिख रहा है बहुत ही सुन दिख रहा है।

इसमें सुंदर सुंदर पत्तिया भी दिख रही है जिसमें यह खड़ा होकर प्रणाम कर रहा है और शिव जी को जल चढ़ा रहा है।

देख सकते हैं आप गाइस यह हॉस्पिटल है और ऊपर तीन पंखे दिख रहे हैं और महिलाएं बहुत सारी हैं।

जो लाइन में खड़ी हुई है पर्ची के लिए इसमें छोटा सा बच्चा भी दिख रहा है जिसने पिंक कलर का टोपी पहना है।

ड्यू रखा गया है मिठाइयां रखी है लड्डू पेड़े रसगुले है।

गाइस मुंह में लाल पानी आ रहा है।

गाइस बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है --

हेलो गाइस तो आप देख सकते हैं यहां पर बहुत तीन सोफे रखे गए हैं एक टेबल है जिसमें साइड में गुलदस्ता भी है जिसमें हरे कलर का पत्ता लगा है।

और राइट साइड को भी लाइटिंग लगी हुई बहुत ही सुंदर ल ऊपर तीन चार बल्ब लगे हैं।

पंख लगा हुआ है और साथ में दो मेजें भी लगी हुई हैं।

हेलो गाइस तो देख सकते हैं एक इंसानी ने गाड़ी को अपने ऊपर खड़ा कर लिया है।

पेड़ भी बहोत सुंदर दिख रहे हैं गाइस यह पहाड़ों का इलाका लग रहा है बहोत ही सुंदर लग रहा है गाइस --

उसके नीचे भी बहोत सारी गाड़ियां लगी हुई है। दिख रहा है कि यहां कोई सोसाइटी है। सोसाइटी लगेगा इसमें पेड़ भी बहोत सुंदर लग--

जिसमें चार छे ही कमरे होंगे और साइड में बिल्डिंग भी अच्छी है।

इसमे पार्किंग के लिए भी बहोत सारी जगह है पर इस शायद लगता है इस अस्पताल में कोई नहीं जाता है क्योंकि यह खाली है।

ना इसमें बाहर कोई गार्ड बैठा है ना कोई अंदर दिख रहा है मुझे लगता है यह सिर्फ नाम का हॉस्पिटल है।

इसमें झड़ियां ही झाड़ियां लगता है काटे ही कांटे है इसमें गाइस --

और रेड रेड कलर का भी दिख रहा है यह करेट के ऊपर बैठाई गयी है और एक करेट के ऊपर एक थाली रखी गयी है।

शीशे में देखके फोटो खींच रहे हैं गाइस शायद ये जिम में हैं या तो--

बहुत सारी छोटी-छोटी लड़कियां भी है जो परफॉर्मेंस कर रही है बहुत ही सुंदर तरीके से नाच रही है।

बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है मन कर रहा है कि वॉलीबॉल खेलूं क्योंकि मेरा फेवरेट --

ऐसा लग रहा है कि यहीं पर मन बसा लो अपना।

जिसमें बहोत अच्छे तरीके से सजाया गया है। यहां पर दो आदमी भी है जो अपने आप को देख रहे हैं इधर और उधर पता नहीं कहां से आते है ऐसे ऐसे लोग--

हेलो गाइस तो आप देख सकते हैं यहां पर पुलिस की जीप लगी हुई है।

और साथ में चार-पांच लोग भी दिख रहे हैं।

भी लग रही है जिसने छत की ऊपर चार छे पत्थर भी रखे हुए हैं।

और लेफ्ट साइड को एक सुंदर सा पेड़ दिख रहा है।

हेलो गाइज तो आप देख सकते है ये बुक शॉप है जिसमें बहोत ही सुंदर सुंदर बुक नजर आ रही है अलग अलग कलर की भी।

और एक चित्र भी दिख रहा है जिसमें फोटो फोटो लगी हुई--

और बहुत सीढ़ियां चढ़ रहे हैं सीढ़ियां यहां बहुत दिख रही है गाइस ।

हेलो गाइस तो देख रहे हैं आप यह एक--